आसमान में बादल है बहुत तरीका का यहां पे भी आसमान है फिर यहां पे टॉवर खड़ा है फिर यहां पे गेट है एक ठो बहुत तरीका का गेट --

दो ठो चेयर फिर ऑफिस के बगल में चेयर है फिर यहां पर दो ठो पोस्टर बना हुआ है पोस्टर में गाड़ी है दो ठो आदमी उसके बगल में भी पोस्टर है वहीं सेमे पोस्टर है एकठो आदमी एकठो गाड़ी एकठो बच्चा।

इसके बगल में एक छत्ता है फिर यहां पे एक ठो ईटा के तरह कुछ खड़ा हुआ है यहां पे भी खड़ा हुआ यहां पे भी खड़ा है बहुत ही जगह खड़ा हुआ है ईटा टाइप्स का।